यहाँ पे एक बड़ा मैदान दिख रहा हैं जिसमे बोहत सारी घाँस लगी हुई दिख रही है कुछ पीली मट मिट्टी भी पड़ी हुई दिख रही है।

पर्दा दिखाई दे रहा है पर्दे के पास में तीन ऑक्सीजन सिलेंडर रखे दिखाई दे रहे है।

के खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दोनों लड़को ने सफ़ेद कलर की शर्ट पेहन रख रखी है जो दिखाई दे रही हैं।

और ऊपर की तरफ लाल कलर की पट्टी बंधी हुई है जिसपे लिखा हुआ है एल जी --

तीन सेड वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ औरते बैठी हुई दिखाई दे रही हैं दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है टैंकर रखा हुआ है कुछ--

यहाँ पे एक कमरा दिख रहा है जिसकी दीवाल सफ़ेद कलर की पुती हुई दिख रही है कुछ बैलून लगे हुए दिख रहे है दिवार पर नीले और लाल--

खुर्सी हैं तथा बैठे हुए दिखाई दे रहे है कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक आ फिश कि शॉप दिख रही है जहाँ पे बहुत सारे फिश रखी हुई दिख रही है नीले कलर कि पॉलिथीन के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है ।